और नीचे दो तीन कचड़े दिख रहे हैं और उधर जल वाला बनाया हुआ है।

इस चित्र में एक पहाड़ दिख रहा है जिस पे एक मंदिर बनाया हुआ है और एक टंकी दिख रहा है।

और उधर च हरा भरा पेड़ पौधे दिख रहे हैं बहुत सारे पत्थल दिख रहे हैं।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

और अगल बगल बहुत सारे कुर्सियां रखा हुआ है इधर फूलो से सजाया हुआ है।

और फूलों से सजाया हुआ है और इधर कुछ पानी जमा है और हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और बहुत सारे गिलास और लोटा दिख रहा है एक बड़ा सा जग दिख रहा है।

डी_जे लाइट लगे हुए है और रंग बिरंगे लाइटें जल रहे हैं।

और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और बहुत खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

इस चित्र में तीन चार बच्चे दिख रहे हैं जो कि कुछ गेम खेल रहे हैं।

और ऊपर में एक केक रखा हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे फूल दिख रहे हैं जो कि छोटे छोटे हैं।

और पीले और रेड रंग के फूलाये हुए हैं और बहुत खूबसूरत गेंदा के फूल दिख रहे हैं।

और एक गड्ढा बनाया हुआ है सभी फुल लाइन से लगाया हुआ है।

इस चित्र में एक बड़ा सा होटल दिख रहा है और बहुत सारे कुर्सियां और टेबल दिख रहे हैं।

और ऊपर मे बहुत सारे बॉक्स रखा हुआ है एक बडा सा कुर्सी दिख रहा है।